अ बोहोत लोगो का रोज भीड़ होता है। इस दुकान में दुकान की बाहार एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

इधर एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस में बहुत सारे केबिन है केबिन के पास चेयर भी है।

बड़ा-बड़ा विंडो दिखाई दे रहा है। विंडो में पर्दा है।

एक फादर के हाथ में एक बुक भी दिखाई दे रहा है ये बाइबिल है।

अ चर्च की बहुत सुन्दर से सजाया है सामने कुछ फूल भी लगाया है।

किचन बहुत बड़ा है | रेस्टोरेंट की चार पांच बहुत सारे सूंदर से लाइट से सजा है।

जगह में अ अ एक लोग भी खड़ा है दूर में एक सोफा दिखाई दे रहा है।

और उ सड़क के दो पास में छोटा-छोटा बड़ा-बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

से अच्छा अ टीचर्स भी है।

इस स्कूल में एडुकेशन भी बहुत अच्छा होता है।

बस्ता में बहोत सारी चीज़े दियाल में भी की बोतल है कॉलिन है।

अ हल्दी से अ चॉकलेट बॉक्स है।

बस स्कूटी साइकिल बाइक भी खड़ा है।

इधर एक पानी का फवारा दिखाई दे रहा है फवारा बहुत सुन्दर है।

अअअ एक घ घ दीआल में घड़ी दिखाई दे रहा है इस रूम की --

इधर एक हॉल ऑडिटोरियम दिखाई दे रहा है | दूर में एक स्टेज सजा है | स्टेज के चार पास बहुत सारे फूल लगाया है।

विंडो में बहुत सारी पर्दा दिखाई दे रहा है सीलिंग में बहुत सारे लाइट जल रहा है।

इधर एक प्रोग्राम हो रहा है | एक स्टेज सजाया है | स्टेज बहुत बड़ा है।

इधर पैलेस में एक अनुष्ठान हो रहा है | पैलेस के चार पांच बहुत सारे लाइट से सजा है | सामने एक गेट भी सजाया है।